इस चित्र में एक बड़े से जंगल की तस्वीर है जहां पे एक छोटा सा गुहा है सीढ़िया हैं।

इस चित्र मे एक जगह की तस्वीर है जहां पे एक छोटे से स्विमिंग पूल में पानी जो है उड़ रहा है ।

दीवारों का रंग जो है वो पीला और काला है बहुत सारे लाइटो और लैम्पो से सजाया गया है नीचे जमीन रंग जो है काला है।